मुझे तस्वीर में एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है सामने में एक येलो कलर का गेट भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में कई सारे बिल्डिंग्स सिखाई दे रहा है।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

सामने में बंबू से बना हुआ टोकरी भी दिखाई दे रहा है।

और बंबू का सीढ़ी भी लगा हुआ है।

सामने में एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा पंखा लटका हुआ है।

ऊपर का नीला आसमान और सफेद बादल भी दिखाई दे रहा है।

आमने में कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

में पंखा और लाइट भी दिखाई दे रहा है।

उपर में चमकता हुआ लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई दे रहा है।

आसपास पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

टाटा स्काई सिग्नल कैचर भी लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारा स्टेच्यू भी रखा हुआ हैं।

एक बड़े झंडा की टंगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा टमाटर दिखाई दे रहा है।

टमाटर का सामने भिंडी भी रखा हुआ है।

सामने में एक बुक्शेल्फ रखा हुआ है जिस पर किताबें और फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

सामने वाले टेबल पर क्यू_आर कोड स्कैनर और डब्बा रखा हुआ है।

सामने में दो गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने भी लटका हुआ है।

पेड़ के ऊपर कई सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये बहुत बड़ा कंप्यूटर और प्रिंटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में रेड कलर साड़ी पहना हुआ औरत भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा कार्टून का डब्बा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में लंबा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ऑटोरिक्शा के उस पार बाइक्स भी दिखाई दे रहा है।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

बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी लाइट्स भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा--

मुझे इस तस्वीर में एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।